यह एक बेडरूम का दृश्य है इसमें एक लड़का अपने बिस्तर पे स-आराम से सो रहा है तकिया को हाथ में पकड़ के और-- ।

चटाई बिछाई हुई हैऔर यहा पर जूता चप्पल रख के बेच रहा हैं और इसके आस-पास में बहुत सारी दुकाने लागीहुई है ।"

इस दृश्य में हमें एक घर दिखाई दे रहा है घर का स-साइज काफी ज्यादा--